देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई है सामने --

यहां कुछ खेत दे रहे है जिनमें--

ये एक पार्क है पार्क में बहुत से रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं सामने एक--